बहोत सारे पेड़ पौधे दिख रहे गार्डन एरिया दिख रहा है नीला आसमान दिख रहा--

सामने एक बड़ा सा पोल भी गाड़ा गया है रंग बिरंगे पेंट किया हुआ है जितने भी लोहे के खेलने वाले झूले पर लगाए गए हैं फीसल पट्टी लगाए हुए हैं सी--

यहां पे दो तीन लेबर मिस्त्री है जोकि अपना काम कर रहे हैं यहां पे छड़ बिछाए गया है मिट्टी सीमेंट्स पटरी लगाए हुए हैं एक मशीन भी रखा गया है यहां पे जो पाइप वाला है।

ऐ कोई गराज का सीन है जहां पे कार को बनाया जा रहा है।

बहुत सारा सीमेंट का बोड़ा रखा गया अगल बगल में भी घरे दिखाई दे रही है एक कार लगाया हुआ है स्कॉर्पियो ।

सारे बांस वास रखे गए हैं यहां पे।

बहोत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं अलग अलग प्रकार के प्लांट्स लगाए गए हैं अलग अलग प्रकार के ग्रासेस भी है।

नीला दिखाई दे रहा है धूप पूरा उगा हुआ है इसलिए परछाई आ रहा है।

नदी जो पानी आ रहा है यहां पे अलग अलग प्रकार के टब नाव रखे गए हैं।